और शेल्फों पे बहोत सारे डब्बे में बहोत सारे सामने रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक फ़ादर को फूलों की माला पहनाई गई है।

और इस घर के अगल-बगल सिर्फ छोटे-छोटे गाँछ और बड़े-बड़े पेड़ उगे हुए हैं।

और सीढियों के बगल मे बहुत सारे पत्ते बिखरे हुए हैं।

जिस में छोटे-छोटे दो गेट भी लगे हुए है और उनके पीछे एक पेड़ भी दिख रहा--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं एक लड़की ने साड़ी पहनी हुई है और बहोत सारी ज्वेलरी भी पहनी हुई हैं।

और बौंडरी के बाहर कुछ पेड़ बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए --

इस तस्वीर में हम देख रहे है कि यहाँ बहुत बड़ा एक पत्थर रखा हुआ है।

और यहाँ पर सिर्फ पेड़ के अलावा और कुछ भी नही है।